कुछ लाइटे लगी हुई है वो जो कि ऊपर की ओर है छत में कुछ पंखे लगे है जो कि छत में लगे है।

कुछ औरतें है जो की अंदर हैएक आदमी है जो की अंदर हैं चारों तरफ़ कुछ पेड़ पौधे हैं जो कि हरी- हरी है।

उसका छत्त बन रहा है इसलिए नीचे लकड़ियां लगी हुई है चार खिड़कियां है जोकि काफी बड़ी-बड़ी हैं उनमे अभी जाली नहीं लगी हुई हैं।

जो कि पीले कलर का है उसके बगल में एक मकान है जो कि दो मंजिला है जिसमें कांच लगी है सामने की ओर कुछ चारों तरफ लाइटें लगी है जो कि सफेद कलर की जल रही है और चारों तरफ़ चमक हैं।

एक बस स्टेंड है जिसमें दो बस खड़ी है एक बस गुलाबी कलर की और काले कलर की मिक्स है।